खड़ी हुई है सामने की और एक गेट है और राइट साइड में एक द अ शीशा का खिड़की है बहुत सारे दरवाजे और खिड़की है।

एक सामने बहुत बड़ा घर है जिसमे सुकमा लिखा हुआ है एक बोर्ड में एंड दो एक कार खड़ी हुई है एक दीवाल --

सामने नीचे की और छोटे- छोटे भगवान का फोटो बना है तुलसी का कांच है छोटा सा कांच है --

ये एक कॉफ़ी का दुकान है जिसमे एक शटर लगा हुआ है ब्लू कलर का एंड ऊपर में एक कॉफ़ी का--

एक लकड़ी का डब्बा रखा हुआ है दो ठो सामने की और एंड बहुत सीसा का दरवाजा है इसमें शटर है।

खाई है नीचे की और एक आदमी जो बैठा हुआ है पिंक कलर का गंजी पहने और ब्लू कलर का जींस पेंट पहना हुआ है।

दस चेयर है एक टेबल है बहुत बड़ा-सा एक एसी है राइट साइड की और लेफ्ट साइड की और एक फोटो है एंड राइट साइड की ओर एक डेस्क --

एक कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमे एक लोकवानी के पोस्टर है जिसमे एक आदमी हैं माइक लिए हुए सामने एक माइक रखा हुआ है।

बहोत सारा आदमी सामने की ओर बैठा हुआ है ऊपर की ओर लाइट है लगी हुई है एक --

एंड ऊपर जो है बहुत बड़ा-बड़ा लाइट लगे हुए है झूमर लगे हुए है लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर की कुर्सी लगी सामने की ओर एक स्टेज बना हुआ है।

इंजीनियरिंग द टीचर लिखा हुआ है हैप्पी इलेवन का बोर्ड में बहुत सारे बल्ब लगे हुए है वाइट कलर का घर है दो तल्ला घर है नीचे --

एंड राइट साइड में एक हाथ नज़र आ रहा है आदमी का एंड सीधे की ओर एक लाल एंड वाइट में बस है।

एक बहुत बड़ा डिस्को बार है जिसके राइट की और एक पंखा है एक लाइट है सामने की ओर और बहुत लड़कियाँ डांस कर रही है एक बच्चा डांस कर रहा है।